बिजली का खंभा लगा हुआ है जिससे कई सारे तार जा रहे हैं।

यह एक जैन फूड सब्जी वाले का पैंपलेट लगा हुआ है।

कई सारे व्यक्ति कारखाने का परीक्षण कर रहे हैं।

दो व्यक्ति सफेद टोपी पहने हुए और हल्की हरे रंग की जैकेट पहने हुए खड़े हुए हैं।

कई सारे छात्र और छात्राएं कुर्सी मेज पर बैठे हुए हैं।

भूरे रंग की प्लाईवुड से हॉस्पिटल का बोर्ड बना हुआ है।

यह एक ट्रैक्टर के बाहर का शोरूम नजर आ रहा है।